अ बहुत बड़ी मशीने हे दिखाई दे रही है कुछ यहा आ अलग फर्ड पड़ा हुवा दिखाई दे रहा है बादल दिखाई दे रहा।

नाव याहा छोटी-छोटी आठ दस किनारे और खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

नदी मे हे बहुत सारे बिलारे डली हुई उन मे फूल लगे हुवे दिखाई दे रहे है बिलारे पानी मे इतने अच्छे हरेक अच्छे दिखाई दे --

यहा लाइनिंग है तार खिची हुई दिखाई दे रही है।

यहा बहुत बड़े बड़े खंभे दिखाई दे रहे है बादल दिखाई दे रहे है पानी भी भरा हुवा--

यहा कुछ स्टेज जमी सी जेसी लग रही कुछ खाली कुर्सीया अलग अलग कलर की दिखाई दे रही है। दो गेट लगे हुवे दिखाई दे रहे है। जो लकड़ी के लगे हुवे है। यहा --

इमेज मे यहाँ एक पहाड़ दिखाई दे रहा है जो कुछ बेलाए लटकते हुई कुछ पट्टीया लटकती हुई झूमती हुई ये पहाड़ से नीचे लपटी हुई दिखाई दे रही है।

जमी हुई दिखाई दे रही है काँच के कपे दिखाई दे रहे है ये यहा कुछ के दिखाई दे रहे है जो बहुत अच्छी डिज़ाइन में प्रिंट किये गये है। यहा बरणीया काँच की दिखाई दे रही है यहा --

मटकें दिखाई दे रहे है यहा घड़ी छपी हुई दिखाई दे रही है यहा कुछ शिल्पे दिखाई --

यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़े भी लगे हुवे दिखाई दे रहे है रोड के साइड मे कुछ हरियाली भी दुभाह लगी हुई दिखाई दे रही है।

हमें यहा ऐंगल ही लगी हुई पूल पर दिखाई दे रही है कुछ कंकड़ पत्थर डले हुवे काले-काले दिखाई दे रहे है और नीचे नदी का पानी दिखाई दे रहा है।